जो ये सोफा दिख रहा है ब्लू कलर में ये तो काफी अच्छा है ब्लू एंड ब्लैक कलर का है।

घूमने का भी दिल कर रहा है मेरा यहां पे जाने का भी यहां के जो--

एक टाइम था मैं भी जिम जाता था मगर--

ये है एस_बी_आई बैंक लोर बाजार की फोटो जहां पे--

पर मुझे अभी मैं श्योर नहीं हु की ये वही भोजनालय है मगर तारा भोजनालय वहां पे भी है शायद ये वही भोजनालय है।

मगर जो भी है जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई यहां पे फंक्शन है जैसे की कोई मेला लगा है तब इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है यहां पर--

जोकि ये किसी सिल्वर ज्वेलरी की शॉप नजर आ रही है अब लोकेशन कहां है नो आइडिया मे बी शायद शिमला मे भी हो सकती है।

और कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी भी की जा रही है मगर जगह कौन सी है।

वैसे तो उस पे सोनपुर लिखा है पर मे बी कोई और जगह हो।

अब इस तरह की शॉप संजौली में भी है शिमला में भी काफी है।

एक्सरसाइज कर सकते हो लेग्स के लिए कर सकते हो।

ये ईमेज किसी म्यूजियम की नजर आ रही है किसी म्यूजियम में लगी है जहां

ये जो शॉप है ये टॉयज के बच्चों के टॉयज की शॉप है।

ये है शिमला कैफे पार्ट टू गुफा।

अब ये उसी की ही इमेज है या कोई और भी हो सकता है पर इसमें पार्ट टू लिखा गया है।